यहाँ पर संगीत इलेक्ट्रॉनिक्सकी अच्छी दुकान है।

यहाँ पर बहुत सारी टी-शर्ट रखी हुई हैं। यहाँ पर टी-शर्ट हेंगर पे टंगी हुई हैं।

प्लेट मे चार चिकन लॉलीपॉप रखी हुई है ये चिकन लॉलीपॉप पर फाइल लगी हुई है यहाँ पर सलाद रखा हुआ है।